यहाँ एक अअअ कॉलोनी दिख रही है जहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर एक लाइट का खंबा भी है।

और यहाँ पर एकआदमी खुले टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ है यहाँ पर ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

और माला बहुत लंबी है और नारंगी कलर की भी माला टंगी हुई है।

अ जिसमें एक बिल्डिंग में अ नेट लटक रही है और एक बिल्डिंग अ सिंपल है।